आगु से वीडियो बनाही मोबाइल वाला फोटो घीचालीह आगु से --

पेड़ में हरा-भरा लग रहा है।

पता ने कुन कटिंग मे खिचालक ये ऐते मस्त तस्वीर अएले --

स्कूटी येन गजब लगे एबं स्कूटी मजा सा --

उ उ बेबीन कंपनी एल.जी. --